एक दरवाज़े बनाये गए है एक चैनल गेट लगाओ काले रंग की बगल में एक पेड़ है हरे रंग की पत्ते सफ़ेद और नीले रंग की आसमान है साइड में साइड पे पेड़ लगे जो हरे रंग के पत्ती है।

सामने की साइड पे एक बड़ा सा पोस्टर लागरु नीले रंग की है ।गेट लगी हुई है। चैनल गेट जो कत्थई रंग का है। एक-दो आदमी खड़े हुए है। बहार की साइड पे कार खड़ी है। जो काले रंग की है। एक आदमी बैठा हुआ है।

बैंक है जो कत्थई रंग का पोस्टर लगी हुई है।

एक बैंक बना है जो लाल रंग की है और घर बने गए है जो सफेद रंग है पेड़ बनी हुई है हरे रंग की सफ़ेद और नीले रंग की आसमान है बाइके खड़ी हुई जो लाल रंग की और काले रंग की बाइक है एक साइकिल खड़ी हुई है पेड़ लगी हुई है ।

काफी बड़ा समुद्र है जो काफी पानी भरा हुए है एक बगुला बैठ-बैठा हुआ है एक बगला उड़ रहा है सामने की साइड पे घरे बने है जो कत्थई रंगी की है और सफ़ेद रंग के घर बने है चारो तरफ पेड़-पौधे है हरे रंग के पत्तिये है सेद और नीले रंग के आसमान है।

जो लहरें उठ रही है सफ़ेद और नीले रंग की आसमान है सामने की साइड पे एक बोट खड़ी है जो लाल रंग की बोट है।